सामने की साइड पे एक काउंटर बना हुआ जो सफेद और कत्थई रंग की है एक आदमी खरा हुआ- बैठा हुआ है फ़ोन से बात कर रहा है और मास्क लगया हुआ है।

पे पीले रंग के घर बने उ बालकनी बनाई गई है| पेड़-पौधे हैं हरी पत्तियाँ है| एक आदमी खड़ा है जो नीले रंग के कपड़े पहना हुआ है नीले रंग की बाइक है सफेद-नीला आसमान है।

कांचे लगाई गई हैं काले रंग के नीचे कुछ आदमी टहल रहे हैं जो लाल रंग के कपड़े और काले रंग के कपड़े पहने हैं कुछ जो एक छोटी लड़की है नीचे टाइल्स बिछा--

पैर दिख रहे हैं जो नाख़ून भी दिख रही है पत्थर के बना गए हैं जो काफी सारे बहुत सारे डीजाईने बनाए गए हैं पर जो मुकुट है जो गोटी गोटी टाइप मे बन--